आपका फिर से स्वागत है इस ट्यूटोरियल के पहले भाग में मैंने आपको बताया कि यहाँ इस फॉर्म का उपयोग करके अपनी अपलोडेड फाइल की विशेष प्रोपर्टिज को कैसे लें
अब मैं आपको बताऊँगा कि इस फाइल को अपलोड कैसे करें और यहाँ अपलोडेड फोल्डर में इसे कैसे स्थानांतरित करें जोकि अभी खाली है
यदि आपको याद है हम एक अस्थायी जगह का जिक्र कर रहे हैं जो कि हमारे वेब सर्वर पर संग्रहीत की जा रही है
इसका अभी अधिक उपयोग नहीं है
हमारे पास यहाँ हमारी सभी प्रोपर्टिज हैं अतः मैं लिखूँगा properties of the uploaded file तो हम जानेंगे कि हम क्या कर रहे हैं
हमारे पास हमारी सभी विशेष प्रोपर्टिज यहाँ हैं
मैंने उन सबको याद रखने में सरल वेरिएबल नाम दिए हैं तो हमें इन सबको व्यक्तिगत रूप से कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है
पहले कार्य यह हम करेंगे कि जाँचने के लिए एक if स्टेटमेंट बनायेंगे यदि यहाँ कोई एरर्स हों
यहाँ यदि एरर कोड शून्य से बड़ा है तो इसका मतलब है कि इसे एक एरर कोड द्वारा जारी किया गया है फिर मैं die लिखूँगा
और मैं एक एरर मेसेज दूँगा file couldnt
या error uploading file code error
यह उपयोगकर्ता को एक एरर कोड देगा
अब else भाग
मैं इसको साधारण और सिंगल लाइन में रखने के लिए इन कर्ली कोष्ठकों को जोड़ूँगा
अतः else मैं move_uploaded_file नामक फंक्शन का उपयोग करना चाहता हूँ
तो हम अस्थायी नाम temp लेंगे जो इस फंक्शन का पहला पैरामीटर है और दूसरा पैरामीटर डेस्टिनैशन है जो कि अपलोडेड फोल्डर है
अतः मैं uploaded और फॉरवर्ड स्लैश टाइप करूँगा
और उसके अंत में हम फाइल का नाम जोड़ेंगे जिसे हमने अपलोड कर दिया है
अतः यहाँ यह केवल name होगा
यह बताता है कि उपयोगकर्ता यहाँ केवल इंटर वेरिएबल्स जोड़ रहा है
अन्यथा हमें ये टाइप करने पड़तेउदाहरणस्वरूप temp name
फिर यहाँ जाएँ और इसे इस तरह रखें
यह काफी अस्तव्यस्त और पढ़ने के लिए मुश्किल लगता है
अतः यह इन वेरिएबल्स को यहाँ रखने के लिए काफी आसान है
ठीक है तो अब मैं इसे हटा देता हूँ या इसे मैं रख देता हूँ
और आखिर में मेसेज एको करता हूँ upload complete
चलिए इसकी कोशिश करते हैं
मैं अपने पेज में लॉगिन करता हूँ और अपनी intro to avi फाइल उठाता हूँ
मैं अपलोड पर क्लिक करूँगा और हम देखेंगे कि अपलोड पूर्ण हो गया है
चलिए मेरी फाइल जाँचते हैं
फोल्डर अपलोड करें और मेरी अपलोडेड सबडाइरेक्टरी पर क्लिक करें आप देखेंगे कि यह फाइल यहाँ है जबकि पहले इसे मेरे वेब सर्वर पर अस्थायीडाइरेक्टरी में संग्रहीत किया गया था
अतः हमने यहाँ अपनी फाइल सफलतापूर्वक अपलोड कर दी है
यहाँ कुछ और चीजें हैं जिन्हें हमें करने की जरूरत है
दूसरे if स्टेटमेंट को undo करें या इस if स्टेटमेंट को undo करें
हम विशिष्ट फाइल प्रकारों के लिए जाँच करने जा रहे हैं जिन्हें हम अपलोड नहीं करना चाहते
अतः अदाहरणस्वरूप मानिए कि मैं avi फाइल्स अपलोड करना नहीं चाहता हूँ
मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ कि यदि एरर शून्य से बड़ी है तो फाइल्स अपलोड न करें
अन्यथा मैं else के अंदर एक नया if स्टेटमेंट शुरू करूँगा
और मैं यहाँ ब्लॉक बनाऊँगा
और ये conditions for the file हैं
मैं लिखता हूँ यदि फाइल का प्रकार जोकि हमारा टाइप वेरिएबल है type दो इक्वल टू चिन्ह इक्वल विडियो डोट avi
जैसा कि आपने इसके पहले भाग में देखा जैसे ही मैंने इसे एको किया यह विडियो डॉट avi के समान था
और फिर हम कह रहे हैं कि यदि यह विडियो डॉट avi के समान है तो फाइल को अपलोड करें
मैं इसे यहाँ नीचे लाऊँगा और मैं उसे else ब्लॉक में रखूँगा
अतः अब मेरे पास है यदि विडियो avi के समान है फिर die और मेसेज है that format is not allowed
ठीक है तो मैं अब इसे अपनी अपलोडेड डाइरेक्टरी से डिलीट करूँगा और मैं अपनी पहली अपलोडेड फाइल पर वापस आऊँगा
मैं intro dot avi चुनूँगा और जब मैं अपलोड पर क्लिक करता हूँ तो यह दिखाता है कि format is not allowed
और यदि मैं मेरी अपलोडेड डाइरेक्टरी पर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि फोल्डर खाली है
कुछ भी अपलोड नहीं किया गया है
अब avi के बजाय चलिए लिखते हैं कि मैं images with png एक्सटेंशन बैनप्रतिबंध करना चाहता हूँ
मैं इसे यहाँ बदलूँगा और फिर से मेरी फाइल अपलोड करूँगा
आप देख सकते हैं कि क्योंकि यह एक स्वीकृत फाइल प्रारूप है हमें मेसेज मिलता हैupload complete और यह मेरे अपलोडेड फोल्डर में स्थानांतरित कर दिया गया है
इसे फिर से डिलीट करते हैं ओह ! मैंने इसे रद्दकैन्सल कर दिया चलिए फिर से डिलीट करते हैं
औके तो हमने यहाँ क्या देखा कि विशिष्ट टाइप को कैसे उल्लिखित करते हैं
हम और क्या कर सकते हैं कि हम विशिष्ट फाइल साइज उल्लिखित कर सकते हैं
मैं इस or ऑपरेटर का उपयोग करके or लिखूँगा और मैं लिखूँगा or साइज हाफ मेगाबाइट से बड़ा है
यह हाफ मेगाबाइट है जिसमें पाँच सौ हजार बिट्स माफ कीजिए बाइट्स हैं मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी है और मैंने बाइट के बजाय बिट्स कह दिया है
अतः यह पाँच सौ हजार बाइट है जो कि 0 प्वॉइंट 4 मेगाबाइट के समान है मैंने अभी के लिए केवल हाफ मेगाबाइट लिखूँगा
यह साइज का मूल्यांकन करेगा और बतायेगा कि यह हाफ मेगाबाइट से बड़ा है
फिर यह बताता हैthis format is not allowed
अतः मैं format not allowed or file size too big को अनुकूल बनाने के लिए इस मेसेज को बदलूँगा
अतः आप इनमें से प्रत्येक के लिए एक if स्टेटमेंट बना सकते हैं जो कि आपके टाइप का मूल्यांकन करने के लिए और आपके साइज का मूल्यांकन करने के लिए है
आपको इस कंडिशन को लेने की आवश्यकता है और इसे if अन्य स्टेटमेंट में रखें
तो मैं यहाँ वापस जाता हूँ और मैं मेरी फाइल फिर से चुनता हूँ
केवल जानने के लिए कि यह वहाँ है
अपलोड पर क्लिक करें और यह कहेगाformat not allowed
अब यदि आप अपने कोड पर वापस जाते हैं तो यह png प्रारूप में नहीं है लेकिन यह साइज सीमा को बढ़ा रहा है
चलिए इसे 2 million में बदलते हैं जो 2 मेगाबाइट्स है
रिफ्रेश करें और send करें
हम देख सकते हैं कि हमारा अपलोड पूर्ण हो गया है क्योंकि यह साइज में एक ही मेगाबाइट है
यही सब मेरे पास अभी के लिए फाइल अपलोड पर है
यह सब आपको विशिष्ट फाइल टाइप्स और फाइल साइज को रखने के लिए इसका उपयोग करना जानने की आवश्यकता है जो आपके वेबसर्वर के लिए बहुत बड़ा है
यदि आप अपने वेब सर्वर में बड़ी फाइल्स नहीं चाहते हैं तो इसे नियंत्रित करने का यह अच्छा तरीका है
जैसा कि आपने देखा यह बनाने के लिए काफी आसान है
इसका अभ्यास करें और आप इसकी उपयोगिता से काफी प्रभावित होंगे
यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया पूछने में संकोच न करें
और कृपया सब्स्क्राइब करें यदि आप किसी भी अपडेटेड विडियो या नये विडियो पर अधिसूचना देना चाहते हैं
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित हैआईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद